नदी हो गए खूब भारी के नदी बाटे छोटा-छोटा पेड़ पौधा बाटे। बादलों लउकत ताटे।

बादल भी बाटें| आदमी चालो तलल बैग लेहले बाटे लोग। बहुत अच्छा लगता देखने में अति सुंदर बाटे।

कउनो महल हउवे ओकरे अंदर गद्दा धैल बा कुर्सी वाला बैठे वाला छोटे-छोटे पौधा बाटे।

नीचे टाइल लगावल गइल बा। देखने में बहुत अच्छा लगत बाटे। बल्फ भी जरताटे। छोटा छोटा पौधा भी बाटे हरा कलर के।

इ घर हवे स्कूले लेखा लाग ताटे पार्क बाटे छोटा-छोटा घास भी बाटे पोस्टर छपल बाटे।

घर भी बाटे तार भी बाटे पेड़ पौधा भी बाटे हरा कलर के टेम्पो भी बाटे आदमी भी बाना लोग बादल भी बाटे। देखने में बहोत अच्छा लागटाते।